पार्क है साइड में पेड पौधे लगे हुए हैं और जो शेड डला है उस के निचे से लॉग अपने अपने गादीयाँ निकाल के जा रहे हैं अंदर लोग होंगे बहार से तो नहीं समझ में अराहा है।

सूखी हुई घास जो जमी हुई है उसके ऊपर बैठे हुए हैं धूप में बैठे हुए हैं।

तो थोड़ा-थोड़ा सर्दी और गर्म का मौसम है बसंत जैसा रुतु होती है वैसे लोग धूप का आनंद ले--